यहां पर सब आदमी जिम कर रहे हैं सब बच्चा के सोते हुए यहां पर जिम करने रूम है यहां पर शीशा लगा हुआ है यहां पर खटका है यहां पर तार गया हुआ है।

और यहां ब अ नीचे पे दरी वरी बिछाया है उस पर जिम कर रहा है बच्चा वच्चा सब जिम के रहा है।

यहां पर लोहा से दिख रहा है लोहा पीला कलर का यहां पर खिरकी दिख रहा है।

यहां पर रूम पेंटून कोई जी का यहां पर सामान धरा हुआ दिख रहा है और एक भी आदमी यहां पर नहीं दिख रहा है।

थाली उल्ली दिख रहा है थाली में सब्जी धरा हुआ दिख रहा है बुनिया दिख रहा है।

यहां पे कॉपी लिए पढ़ रहा है एक लड़के साइड में बैठी हुई देख रहे हैं यहां पर लोक से बहुत सारा दिख रहे है।

लकरी का बोर्ड दिख रहा है यहां पे आदमी सब का फोटो चिपकाया हुआ दिवाल में एक तार दिख रहा हैं साइड में--

एकसी बैंक का ए_टी_एम दिख रहा है यहाँ पर--

यहां पर मकान दिख रहा है मकान तीन मंज़िल का है मकान के ऊपर लोहा का एक टीन घेरा हुआ है।

लेमिनेशनल हुआ है गेट है गेट के अंदर एक मूर्ति के फोटो है।

आ रहा कलर के रेड कलर के वाइट कलर के बॉल लगा हुआ सजा हुआ दिख रहा है गाल प हात लगा के बैठा हुआ दिख रहा है और डिस्को लाइट भी बढ़ता हुआ दिख रहा है यहां पे साइड में --

यहां पर गैस सिलेंडर दिख रहा है दो गैस सिलेंडर एक वाला रेड कलर के यहां पर लाइन अप करने वाला दिख रहा है यहां पर खिरकी दिख रहा--

अ यहाँ पे लोहा के खिड़की उड़की है यहाँ प हरा किमाड़ी दिख रहा हैं।

इस सा लगा हुआ गमला है गमला के अंदर फोल्डर लगा हुआ दिख रहा है।

यहां पर सीधे ऊपर चढ़ने वाला दिख रहा है यहां पर खिटकी खुला हुआ दिख रहा है ये तो ऑफ नहीं ऑन है।

इ सब हरा कलर क बा बाउंड्री के पीछे खेत उत है गाछ पीछ पीछे दिख रहा है जो ए टावर भी है पीछे से दिख रहा हैं जो वहाँ घेरा हुआ है उसके अंदर बाहर टावर भी दिख रहा हैं।

यहां पे कोई चीज का पहाड़ है पहाड़ के ऊपर एक मूर्ति का फोटो है यहां पे लाइट लगा है हरा कलर का रेड कलर का लाइट हुआ नीचे आदमीस हैं।

और यहां पर रोड्स प पर एक भी लग का नहीं दिख रहा है आसमान कलर नीला दिख रहा है और ट्रेन के कलर रेड कलर के दिख रहा है ट्रेन क कलर दिख रहा है साइड में--

वहां पर एक मूर्ति के ऊपर झंडा टंगा हुआ है ये रेड कलर का झंडा दिख रहा है बहुत ऊपर टंगा हुआ है दिख रहा है अभी से--

जतिया करने वाला नहीं इसमें लगा हुआ है।

और पल्ली से तपा हुआ है आसमान दिख रहा है कलर नीला दिख रहा है।

यहां पर पानी के बोतल में पानी भरा दो पानी की बोतल एक डिवा साइन में भरा हुआ है जो रेड कलर के छिपा है।

और सब बोतल ग टावर दिख रहा है टावर ऊंच पर बहुत ऊंच प दिख रहा है टावर वहां पे साइड में दिख रहा है अभी --

यहाँ पर उन्नीस सौ इकानवे लिखा औ साइंस लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पर गमले का फूल दिख रहा एक गेट सीसा का लगा हुआ दिख रहा है टेबल दिख रहा कुर्सी रहा है।

जगह दिख रहा है पानी के अंदर विशु प्रकाश से फोटो दिख रहा है।

दो आदमी खारहा है हाथ दिखाते इशारा कर रहा है जंगल से बहुत सारे हैं और तार के एक साइड के आसमान के कलर के बगल में एक तार ब--

रूम है रूम के अंदर में एक टेबल रखा हुआ दिख रहा है बाइक बगल में टमपू रुका हुआ दिख रहा है।

एक मोटरसाइलिक भी रुका हुआ दिख रहा है यहां पर तीन चार मंजिल का घर दिख रहा है।

ये पलाई के चौकी दिख रहा है रूम दिख रहा है।

और यहां पर कुछ फोटो लगा हुआ दिख रहा है झोरा दिख रहा है पानी में सामान कुछ रखा हुआ दिख रहा है अंकल जी दिख रहा है।

यहां पे एक रूम है रूम का अंदर टी_वी दिख रहा है।

यहां पर सामान सहित कुछ रखा हुआ दिख रहा है बजार से दिख रहा है लाइट पंखा दिख रहा है।

छेद मे लाइट उट आ रहा है प्रकाश आ रहा है यहां पे गेट बंद है।

यह कोई चीज यहां पर सांप की तरह दिख रहा है और बहुत सारे सामान से दिख रहा हैं।